बहोत सारा खिड़की है हर गेट पर बिहाई कलर का गेट लगा हुआ है।

बहोत सारा चोखा भी रखा हुआ है आलू का कूचा हुआ।

और बहुत सारा बांस भी लगा हुआ है एक नेट भी लगा हुआ है सफेद कलर का बोर्ड है।

और बहोत सारा चॉकलेट भी रखा हुआ है।

और ठेले पर बहुत सारा आदमी लगा हुआ है।

एक ठेले पे वैसे ही है जहां कोई आदमी नहीं है।

ये यह कोई फंधन का फोटो है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में जहां लोहा का खंबा लगाया गया है।

कुछ बच्चियां यहां डांस कर रही है बहुत सारे सर है बहुत सारे बहुत सारी बच्चियां भी है।

यह साइकिल का शोरूम है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में यहां बहुत सारा साइकिल रखा हुआ है लाल कलर का पीला कलर का हरा कलर का ब्लू कलर का सफेद कलर का --

एक स्कूटी भी रखा हुआ है इसके रखा हुआ है और बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया गया है एक्टिवा पर।

चारों तरफ शीशा का बाउंड्री दिया गया है।

बहोत बड़ा बड़ा घर है जैसे की एक औरेंज कलर का घर है।

और छक्का पर एयरप्लेन भी खड़ा है।

एक का दुकान है ऊपर एक माल भी है जो ऊपर पंखा भी एक दिख रहा है।

एक ऑरेंज का कवर भी लगा हुआ है।

एक आगे में बोर्ड लगा हुआ है जो जिसमें हेल्थ प्वाइंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

सामने एक लोहा का गेट भी है बहुत सारा पौधे भी लगे हुए हैं।

और सब सफेद कलर का ड्रेस पहना है कुछ व्यक्ति कोई कोट पहना है।

यह एक कोई पार्क का फोटो है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में।

बहुत सारा सोफा है सोफा पर एक व्यक्ति है उसके उसके गोद पर एक हेलमेट है एक हेलमेट टेबल पर रखा हुआ बहुत सारा तकिया है।

एक सामने में गेट हैं जो बहोत बड़ा है गेट सामने में खिड़की भी--

बहोत सारा कपड़ा भी रखा हुआ है और बहोत ही अच्छा लग रहा है एक पंखा भी है।

जो अभी भी बिल्डिंग बन रहा है जो बहोत ही बड़ा है।

बहुत सारा दरवाजा भी है और एक गैस भी है रखा हुआ जो फायर ब्रिगेड से सहायता मिलता है।

बहुत सारा लोहा का सामान लगा हुआ है सीढ़ी लगा हुआ है बहुत सारा टेंट लगा हुआ है बहुत सारा कपड़ा है।

धर कुछ मिट्टी का लोहा का सामान रखा हुआ है।

यहां कुछ बच्चे फंक्शन कर रहे हैं जहां बहुत सारा लड़का लड़कियां है।

तीन मैडम भी है जिस जिस मैडम के पीछे एक बैग रखा हुआ है।

जो गेट बहोत बड़ा है कत्थक कर का गेट है सामने एक घर है जो कत्थक कलर का है ऊपर में अल्बेस्टर लगाया गया है।